इसके बाहर काफी व्हीकल्स खड़े हैं।

इसके बीच नट भी लगी हुई हैं।

ये अपनी तस्वीर करवा रहे हैं।

को खड़ा करके रखा गया है।

इसमें किराने का सामान भी पड़ा है।

क्रेन के ऊपर पेपर से --

फ्रूट के काफी स्टॉल लगे हुए हैं।

जिस पर मिक्स फ्रूट लिखा है।

हाथ में फुटबॉल पकड़ी हुई है।

पोल पर गुरुनानन देव जी की तस्वीर लगी हुईं हैं मि--

एक टीचर इन्हे योगा सीखा रहे है।

पीछे काफी बड़े बड़े ट्रीज भी लगे हुए हैं।

सामने एक बड़ा मिरर भी लगा हुआ है।